यहाँ पे गाड़ी को ठीक किया जाता है मोटर साइकिल गाड़ी को और बोहोत ही अच्छे तरीके से ठीक किया जाता है| यहाँ पे ही मेहनत से गाड़ी को ठीक करते हैं।

जैसे की इस बेडरूम में एक बेड लगा है। एक कुर्सी लगा है। एक डाइनिंग टेबल भी है और इस बेडरूम को बहुत ही अच्छे तरीके से --

यहाँ पर बहुत ही कम्फर्टेबले बिस्तर लगाए --

जिसे मछुवारे लोग पकड़ने के लिए जाते हैं और डैम की पानी से किसान लोग अपने खेत पटाते हैं फिर फसल उब जाते हैं।

पैकेट के दूध ख़रीदने के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दूध मिलता है। हर एक कंपनी का दूध मिलता है जैसे अमूल सुधा हो गए।

बनाते है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है आउए खाने --